लाइट वाले खंबे लगे हुए है जो की कोर्नर पर लगे हुए है नीचे गार्डेन साइड दिखा रहा है जिसमे घास लगी हुई है ब्लॉक से कवर --

यहाँ चित्र ए_टी_यम के बहार का है। जिसमे के बिल्डिंग है। उसमे ए_टी_यम खुला हुआ है निचे। जिसमे कच के दरवाजे लगे हुए है।

कुर्सियां राखी हुए है। ऊपर छत डली हुए है। अभी काम चल रहा है। जो की अधूरा है।

यह चित्र एक अ--स्टैशनेरी का है जिसमें बहोत सारे खाने बने हुए हैं हर खाने में अलग अलग किताबें राखी हुई हैं

वुडन का सामान दिखाई दे रहा है वुडन कि टेबल वुडन के फर्निचर पे आइटम रखे हुए हैं

चेयर रखी हुई है जिसपे अंकल बैठे हैं और सलाव दिख रही है पोस्टर लगा हुआ है

यह चित्र एक रोड का है जिसमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें अलग अलग प्रकार की दुकानें अलग अलग चीजों की दुकानें खुली हैं

यह चित्र एक बैंक के बाहर का है जिसमें बहोत सारे अलग अलग प्रकार के नोटिस बोर्ड दिखाई दे रहे हैं

यह चित्र एक पुस्तकालय का है जहा अलग अलग खंड मे बहुत सारी किताबे रखी हुए है ऊपर शेड डला है|

जो कि अलग अलग खाने में अलग अलग किताबें रक्खी गई हैं एक टेबल है जिसमें खाने बने हुए हैं उसमें भी किताबें रक्खी हुई हैं टेबल के ऊपर कांच का ग्लास लगा हुआ है एक लड़का बैठ--

जो स्टैचू में बैठे हुए हैं हाथ जोड़कर नीचे एक लड़का खड़ा हुआ है जो की फोटो खिंचवा रहा है आसपास पूरा व्हाइट कलर पुता हुआ है दीवार व्हाइट है सब व्हाइट पुता हुआ है

टेबले दिखाई दे रही है टेंट लगे हुए है पोस्टर है एक पोस्टर ताजमहल का लगा हुआ है जिसके बहार लोग फोटो खिचबा रहे है|

यह चित्र एक नेत्रालय के बाहर का है जिसमे कांच का दरवाजा लगा हुआ है और पोस्टर लगी हुए है।

ट्रक जीप वैन बहोत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं ऊपर बादल नजर आ रहे हैं ब्रिज नजर आ रहा है|

सामने कांच दिखाई दे रहा है बड़ा स लकड़ी कि अलमारी है जिसमें बहोत सारे अलग अलग आइटम रखे हुए हैं|